ये एक बिल्डिंग का की पिक्चर है जिसपे एक पीले रंग की रोशनी गिर रही है जो हो सकता है स्ट्रीट लाइट हो।

समें काफी अंधेरा है इसमें एक व्यक्ति गुफा के अंदर घुसा हुआ है और पत्थरों को देख रहा है।

काफी सुंदर जिसमें लोग अपने दोस्तों के साथ आके बैठके कुछ टाइम स्पेंड कर सके उनके लिए कुछ चेयर और टेबल भी लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति सामने से अपना ठेला लेके जा रहा है।

सीढ़ियां बनी हुई है पहाड़ को काटकर ये ताकि लोगों को आसानी हो चढ़ने में कुछ--

यहां पे एक व्यक्ति दिख सकता है जो या तो बुक खरीदने आया होगा और या तो इन्हें मैनेज करता होगा रंग बिरंगे किताबें अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें--

वो अपनी पिक्चर क्लिक करवा रहा हैं ताकि ये दृश्य उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाए।

ये देखकर तो एक गांव का दृश्य लग रहा है जहा पे एक आदमी चेयर पे बैठ के--

जारी रखते हुए अपने अपने काम की तरफ बढ़ रहे कुछ बाइक्स पे तो कुछ स्कूटी पे तो को--

जहां और पुरुषों का सेक्शन जहां पे पुरुष और छोटे बच्चों की कपड़े मिलते है।

कुछ फाइल्स सैनिटाइजर और पानी के बोटल पड़े हुए है।

फर्श टाइल्स का बना हुआ है जिसका रंग सफेद भूरा और स्लेटी है।

पहाड़ भी है बहोत ही ऊंचे ऊंचे।

यहां हरे बांस से ही कुछ बनाया गया है गेट के सामने--

पेड़ के पत्तों पे और सबसे पत्तों पे वे किरने गिर रही हैं।